सामने पेड़ है। कोई आपर्टमेंट जैसा लग रहा है। सामने एक स्ट्रीट लाइट भी नजर आ रही है।

तीन खिलाड़ी है ।और उसके पीछे एक बाउंड्री सफ़ेद रंग की है पीछे एक और बाउंड्री हैनीले रंग --

फूल में गुलाबी रंग की कुछ सजावटे लगी है और नीचे पीले-पीले हरे-हरे फूल भी लगे है।

यह एक शहर का रास्ता है रास्ते में काफी लोग जा रहे हैं |

एक सफ़ेद रंग की ट्रक जा रही है रोड के ऊपर पिलर पे मेट्रो लाइन बनी हुई है मेट्रो भी जा रहा है |

यह कोई सरकारी दफ्तर नजर आ रहा --

यहाँं दाल चावल के पैकेट्स भी बाहर दिख रहे हैं। कुछ बोरियां भी दिख रही हैं और दुकान का नाम श्री शारदा स्टोर है।

गुलाबी रंग के कपड़ो में एक आदमी खड़ा है। घड़ी भी लगी है। डिजिटल वॉच है जिसमें दो आठ छब्बीस बज रहे हैं। दोपहर का समय लग रहा है।

और दुकान के अंदर खाली-खाली कु रैक है और सामने एक पिल्लर है।

इसमें एक दरवाजा लगा है भूरे रंग का उसमें कुछ डिजाइन बनी है। बिल्डिंग मे एक --

यहाँ एक कार रिपेयर का गराज दिख रहा है। दो मैकेनिक शायद --

नीले रंग का कुछ डब्बा दिख रहा है। अंदर लाइटे भी लगी हुई है।

बाई तरफ एक पिलर है और इस बिल्डिंग के सामने तीन मोटरसाइकिले खड़ी हैं।

यहाँ एक दफ्तर हैदफ्तर का रंग जो बिल्डिंग है वो नीले और भूरे रंग का है इसमें पिली पिली लाइने भी लगी है दफ्तर के सामने दो बाइक खड़ी हैऔर एक --

तीसरी बाइक हैतीसरी बाइक में एक आदमी भी खड़ा हैअंदर कुछ लोग भी हैं।

यहाँं नीली रंग की एक गाड़ी है और नीले रं --

यहाँ एक गार्डन है गार्डन में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ों के बीच में एक छतरी बनी है।